सफेद रंग का परदा है सफेद रंग की लाइट जल रही है।

पौधों पर सफेद रंग के फूल है एक आदमी चॉकलेटी रंग का पाइप लिए खड़ा है।

फिरोजी सफेद रंग का आसमान है।

हरी चॉकलेटी रंग की बिल्डिंग है।